ये तस्वीर बहोत बड़े शोरूम की है।

जिन पर दो पैंपलेटे भी रखी हुई दिख रही हैं ये ऑफिस बहुत ही बड़ा और सुंदर--

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की है ये रेलवे स्टेशन चरखी दादरी--

ये एक कमरे में रखी हुई है।

इसमे दीवार पर बहोत सारे रैक --

जो की सफेद रंग की है।

और बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहे--

और उसके पास दो बड़ी कैंडल जल रही हैं।

और ये बहुत ही नई और आधुनिक है यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ हैं।

हॉल में बहोत सारी खिड़कियां हैं।

यह तस्वीर एक मकान की है ये दो मंजिल का मकान है।

पड़ी हुई है और यहां एक साइकिल भी दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर बहोत सारी लड़कियों की है ये--

फर्श पर चटाई बिछाई गई है।

और इस कमरे की दीवारें पीले रंग की--

यहां पर एक मकान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर माता रानी की प्रतिमाएं लगाई गई--